वहीं दूर-दूर बोहोत सारी बड़ी-बड़ी इमारते भी बनी हुई हैं जो विभिन्न रंगो की हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुएं हैं जिनका रंग हरा है आसमान भी दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला --

जिन्होंने विभिन्न रंग के वस्त्र पहने हुए है व बहुत सारे लोगो के हाथो में एक सफ़ेद थाली भी है जिसमे खाने की सामग्री रखी।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा कमरा है कमरे की दीवालो का रंग सफ़ेद और हरा है कमरे में बहुत सारी कुर्सियां भी और टेबल रखी हुई है।

कमरे के अंदर बहोत सारी कुर्सियां भी हैं जो काले हरे और नीले रंग की दिखाई दे रही हैं। वही कमरे के अंदर बहोत सारे पर्दे भी लगे हुए हैं जो लाल --

फूलों का रंग पीला हरा सफ़ेद है और पर्दों का रंग पीला और सफ़ेद दिखाई दे रहा है दरवाजे पर दो आदमी खड़े हुए है जिन्होंने लाल और पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हुए हैं और --